और सामने बिल्डिंग दिखाई दे रहीं है सड़क पर एक गाड़ी दिखाई दे रहीं हैं।

जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ दुकानें है दुकानों की खिड़कियां ग्लास की बनी हुई हैं।

इस चित्र में एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है पीछे सरकारी कार्यालय दिखाई दे रहे बाजू में एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

चित्र में एक किला दिखाई दे रहा है।

बड़ी बड़ी पत्थरे दिखाई दे रहे हैं।

छुटने का इंतजार कर रही है सामने एक साफ सुथरी सड़क दिख रही है।

एक बड़ी सी क्लासरूम दिखाई दे रही है।

सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो काले और सफेद कलर की--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

एक व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है उसके पीछे बहोत सारी सीमेंट की बोरीयां दिखाई दे रही है।

इस चित्र में कारखाना दिखाई दे रहा है जहां ते तेल की बहोत बड़ी बड़ी केने दिखाई दे रही है।

उसके पीछे एक घर सा दिखाई दे रहा है।

ये जस्ट पीछे बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहें हैं।

इसके पीछे लंबे लंबे घने पेड़ दिखाई दे रहे है।

जिसमें सामने गायक बैठकर अपनी गायकी प्रस्तुत कर रहा है।

ये कुछ बाइक्स चलती हुई नजर आ रही है।

इधर काले कलर की बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई है किसी तरह का फंक्शन दिख रहा है।